इसमें ब्लैक कलर का कारपेट है| कारपेट के आस पास फ्लार्स से डैकोरेशन किया गया है| फ्लार्स का कलर मल्टीकलर में है| फ्लावर्स जिसमें रखे गए हैं वो व्हाइट कलर का है और आगे जाकर जो है।

लेफ्ट हैंड साइड एक अंकल रैस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के साइड में एक लड़की भी बैठी हुई है और उसके आगे मेन गेट है ।

अ जो चेयर्स की जगह है वहां पे धूप नहीं है आस-पास का जो इलाका है उस तरफ़ काफी धूप है और सुंदर न --

तो सेकेण्ड का होता है व्हाइट और उसके ऊपर एक पैकेट टंगा हुआ हैं जो येलो कलर का है उसके साइड में कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं और नीचे खम्बे हैं।

और ये एक डेयरी शॉप का पिक्चर है यहाँ पर लिखा है मुजफ्फरपुर डेयरी मिल्क पार्लर सुधा करके है| इसके बाहर एक बाइसिकल खड़ी हुई है।

के इसके अंदर जो कलर है। वो मेहरून कलर का है और इसकी जो जीने हैं वो ब्राउन और ग्रे कलर --

और जब जीने चढ़ कर ऊपर जाते हैं तो एक चकरा जैसा बना हुआ है जिसका कलर यैलो और रैड है।

ये एक मॉल जैसा पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लू कलर से डेकोरेशन किया गया है।